नीम्बू आह बोरा में कुछ सामान रखल बा ये सुब में लउकत आ।

जैसेकि रऊआ देख सकतानी येमें काफी सारा गिटार रखल बा।

एमें गिटार का रंग अलग - अलग बा रंग-बेरंग के बा कोने के रंग पियर बा कोने के रंग नीला बा और ओकर बगल में हेल्मेट भी रखल बा।